एक टीन के अ सरफेस पे भी बहोत सारा नंबर लिखा है जैसे फिफ्टीसेवन एटीन टेन ।

ये इमेज एक स्टेशनरी की दुकान की है दुकान मेंविभिन्न प्रकार के स्टेशनरी का सामान करीने से रखा हुआ है जिसमें बैग पेरिस बैग्स नोटबुक्स पेन और अन्य स्कूल कि।

इस इमेज में एक कमरे का इंटीरियर दिखाई दे रहा है जोकि बांस से बनी हुई है।

दो लाल रंग की कुर्सियां भी है जो बैठने और ग्रीनरी के आनंद लेने के लिए है।

खिड़की पर लाल रंग के पर्दे लगे हुए हैं और कमरे में एक ए_सी लगा हुआ है।

ग्रीनहाउस का स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट है और पॉटेड प्लांट्स इस्टेयर जैसे अरेंजमेंट में दिख रहे हैं।

ये इमेज एक पुल से ली गई है जहां से एक चौड़ी नदी और उसके किनारे पर बसे हुए कुछ पुराने घर दिखाई दे रहे हैं।

पुल की रेलिंग उम् रेलिंग इमेज के निचले हिस्से में नजर आ रही है।

नदी का पानी हल्के भूरे रंग का दिख रहा है।

लोग हवा में ऊपर नीचे हो रहे हैं और मजे कर रहे हैं बैकग्राउंड में और भी झूले और पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिसे लगता है यह किसी पार्क या मेले का सीन है।

के बैलून से सजाया हुआ है मिरर में सैलून का इंटीरियर और जादा दिख रहा है।

जो कुछ काम कर रहा है और उसके ठीक आगे एक पौधा है जो की छाँव प्रदान कर रहा है और राइट साइड में एक बच्चा है।

आसमान में हल्के नारंगी और भूरे रंग का मिश्रण दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में एक लड़का सेल्फी ले रहा है और ठीक बैकग्राउंड में बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे--

टिन के ऊपर एक बड़ा सा फनलशेव इक्विपमेंट लगा हुआ है रूम में और भी बड़े मेटल के कंटेनर्स मशीनरी दिख रही है।

औरत ने एक सजी हुई साड़ी और आदमी ने एक काले रंग का कोट पहना है उनके पीछे कलरफुल लाइट की सजावट है।